इस फोटो को देखकर यही समझ में आ रहा है कि यहां पर घर नी गृह निर्माण का कार्य चल रहा है | मजदूर है जो कि गृह निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं |

इस फोटो में सामने एक डेरी दिखाई दे रही है जिसका नाम है विशाखा डेरी पार्लर |

जिस किसी की शादी हो रही हैं और यहाँ पर पंडित शादी की रसमे पूरी पूर्ण कर रहा हैं।

यह ये पाटिया बिठाने का कोई काम चल रहा है जिसके लिए यह आदमी बैठ कर नाप ले रहा है।

आई.डी.बी.आई. बैंक हमारे देश की सबसे अच्छी बैंको में से एक है जिसकी शाखा देश के लगभग हर कोने में देखने को मिलेगी।

इस फोटो को देखने से हमे पता चल रहा है कि यह एक मैकअप स्टूडियो है मतलब यह पर जैंट्स ओर लेडिज के मेकअप का जो भी समान होता है।

इस फोटो को देखने से यह लग रहा है जैसे यह एक रेलवे स्टेशन की फोटो हो ।

यहाँ से लोग गाड़ियों मै डालने के लिए होलसेल रोट रेट पर डीज़ल ले जाते हैं |

इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यह एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया है जहां पर छोटी-मोटी--

फोटो देख कर ऐसा लग रहा है जैसे यह मोटर साइकल का सर्विस सेंटर हो मोटर साइकल में कोई खराबी हो जाए तो उसे ठीक किया जा सके।

जिसे किराए के आधार पर यात्रियों को या समान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए निर्मित किया गया है।

जिसमे कि यह एक सोसायटी बनी हुई है जिसमे बिल्डिंग में सारे घर बने हुए है यहां पर लोग आपस में मिल जुल कर रहते है।

जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिड़ है जिसकी मोटरसाइकिल बहुत याच क्वालिटी की होती है।

की वर्क शॉप है और उसके हॉस्पिटल के सामने एक मोटर साइकल खड़ी हुई है।